इस चित्र मे एक दरवाजा दिख रहा है। ऊपर नकाशा दिख रही है। मूर्ति बनी है।

पादुका पे किताबे किताबे रखी हुई खुर्चिया लगी हुई पाईप लगा है।

चित्र में बड़ी बिल्डिंगे दिख रही है। मिनारे दिख रहे है लाइटे दिख रहे है।